मन की बात के माध्यम से फिर एक बार आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है
आप लोगों को भलीभांति याद होगा नौसेना की 6 महिला कमांडरों ये एक दल पिछले कई महीनों से समुद्र की यात्रा पर था
नाविका सागर परिक्रमा जी मैं उनके विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ
भारत की इन 6 बेटियों ने उनकी इस टीम ने त्वो हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डेज 250 से भी ज़्यादा दिनसमुद्र के माध्यम से इन्स्व तारिणी में पूरी दुनिया की सैर कर 21 मई को भारत वापस लौटी हैं और पूरे देश ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया
उन्होंने विभिन्न महासागरों और कई समुद्रों में यात्रा करते हुए लगभग बाईस हज़ार नौटिकल माइल्स की दूरी तय की
यह विश्व में अपने आप में एक पहली घटना थी
गत बुधवार को मुझे इन सभी बेटियों से मिलने का उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला
मैं एक बार फिर इन बेटियों कोउनके एडवेंचर को नेवी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भारत का मानसम्मान बढ़ाने के लिये और विशेषकर दुनिया को भी लगे कि भारत की बेटियाँ कम नहीं हैं ये सन्देश पहुँचाने के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
सेंसे ओएफ एडवेंचर कौन नहीं जानता है
अगर हम मानव जाति की विकास यात्रा देखें तो किसीनकिसी एडवेंचर की कोख में ही प्रगति पैदा हुई है
विकास एडवेंचर की गोद में ही तो जन्म लेता है
कुछ कर गुजरने का इरादा कुछ लीक से हटकर के करने का मायना कुछ एक्सट्रा आर्डिनरी करने की बात मैं भी कुछ कर सकता हूँ ये भावकरने वाले भले कम हों लेकिन युगों तक कोटिकोटि लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है
पिछले दिनों आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के विषय में कई नयीनयी बातें ध्यान में आयी हैं और सदियों से एवरेस्ट मानव जाति को ललकारता रहा और बहादुर लोग उस चुनौती को स्वीकारते भी रहे हैं
16 मई को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक आश्रमस्कूल के 5 आदिवासी बच्चों ने ट्राइबल स्टूडेंट्स मनीषा धुर्वे प्रमेश आले उमाकान्त मडवी कविदास कातमोड़े विकास सोयाम इन हमारे आदिवासी बच्चों के एक दल ने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ाई की
आश्रमस्कूल के इन छात्रों ने अगस्त 2017 में ट्रेनिंग शुरू की थी
वर्धा हैदराबाद दार्जिलिंग लेह लद्दाख इनकी ट्रेनिंग हुई
इन युवाओं को मिशन शौर्य के तहत चुना गया थाऔर नाम के ही अनुरूप एवरेस्ट फतह कर उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है
मैं चंद्रपुर के स्कूल के लोगों को इन मेरे नन्हेमुन्हे साथियों को ह्रदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
हाल ही में 16 वर्षीय शिवांगी पाठक नेपाल की ओर से एवरेस्ट फ़तह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी
बेटी शिवांगी को बहुतबहुत बधाई
अजीत बजाज और उनकी बेटी दीयाएवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पितापुत्री की जोड़ी बन गयी
ऐसा ही नहीं कि केवल युवा ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं
संगीता बहल ने 19 मई को एवरेस्ट की चढ़ाई की और संगीता बहल की आयु 50 से भी अधिक है
एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दिखाया कि उनके पास न केवल स्किल है बल्कि वे सेंसिटिव भी हैं
अभी पिछले दिनों स्वच्छ गंगा अभियान के तहत बीएसएफ के एक ग्रुप ने एवरेस्ट की चढ़ाई कीपर पूरी टीम एवरेस्ट से ढ़ेर सारा कूड़ा अपने साथ नीचे उतार कर लायी
यह कार्य प्रशंसनीय तो है ही साथहीसाथ यह स्वच्छता के प्रति पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है
वर्षों से लोग एवरेस्ट की चढ़ाई करते रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इसे पूरा किया है
मैं इन सभी साहसी वीरों को ख़ासकर के बेटियों को ह्रदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो और ख़ासकर के मेरे नौजवान दोस्तो अभी दो महीने पहले जब मैंने फिट इंडिया की बात की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पांस आएगा
इतनी भारी संख्या में हर क्षेत्र से लोग इसके सपोर्ट में आगे आएँगे
जब में फिट इंडिया की बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि जितना हम खेलेंगे उतना ही देश खेलेगा
सोशल मीडिया पर लोग फिटनेस चैलेंज की वीडियोस शेयर कर रहे हैं उसमें एकदूसरे को टैग कर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं
फिट इंडिया के इस अभियान से आज हर कोई जुड़ रहा है
चाहे फिल्म से जुड़े लोग हों स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हों या देश के आमजन सेना के जवान हों स्कूल की टीचर हों चारों तरफ़ से एक ही गूँज सुनाई दे रही है हम फिट तो इंडिया फिट
मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जी ने चैलेंज किया है और मैंने भी उनके चैलेंज को स्वीकार किया है
मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है और इस तरह का चैलेंज हमें फिट रखने और दूसरों को भी फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में कई बार खेल के संबंध में खिलाडियों के संबंध में कुछनकुछ बातें आपने मेरे से सुनी ही हैं और पिछली बार तो कॉमनवेल्थ गेम्स के हमारे नायक अपनी मन की बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बता रहे थे
नमस्कार सर मैं छवि यादव नोएडा से बोल रही हूँ मैं आपकी मन की बात की रेग्यूलर लिस्टेनर हूँ और आज आपसे अपनी मन की बात करना चाहती हूँ आजकल गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गयी हैं और एक माँ होने के नाते मैं देख रही हूँ कि बच्चे ज़्यादातर समय इंटरनेट गेम्स खेलते हुए बिताते हैं जब कि जब हम छोटे थे तो हम ट्रेडिशनल गेम्स जो कि ज़्यादातर आउटडूर gamesहोते थे वो खेलते थे जैसा कि एक गेम था जिसमें 7 पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक रखके उसे बॉल से मारते थे और ऊँचनीच होता था खोखो ये सब gameजो आजकल खो से गए हैं
मेरा ये निवेदन है कि आप आजकल की जनरेशन को कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बताएं जिससे उनकी भी रूचि इस तरफ़ बढ़े धन्यवाद
छवि यादव जी आपके फोन कॉल के लिए आपका बहुत धन्यवाद
ये बात सही है कि जो खेल कभी गलीगली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे वे आज कम होते जा रहे हैं
ये खेल ख़ासकर गर्मी की छुट्टियों का विशेष हिस्सा होते थे
कभी भरी दोपहरी में तो कभी रात में खाने के बाद बिना किसी चिंता के बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चे घंटोघंटो तक खेला करते थे और कुछ खेल तो ऐसे भी हैंजो पूरा परिवार साथ में खेला करता था पिट्ठू हो या कंचे हो खोखो होलट्टू हो या गिल्लीडंडा हो न जानेअनगिनत खेल कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से कामरूप तक हर किसी के बचपन का हिस्सा हुआ करते थे
हाँ यह हो सकता है कि अलगअलग जगह वो अलगअलग नामों से जाने जाते थे जैसे अब पिट्ठू ही यह खेल कई नामों से जाना जाता है
कोई उसे लागोरी सातोलिया सात पत्थर डिकोरी सतोदिया न जाने कितने नाम हैं एक ही खेल के
परंपरागत खेलों में दोनों तरह के खेल हैं
आउट दूर भी हैं इंदूर भी हैं
हमारे देश कीविविधताके पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है
एक ही खेल अलगअलग जगह अलगअलग नामों से जाना जाता है
मैं गुजरात से हूँ मुझे पता है गुजरात में एक खेल है जिसे चोमलइस्तो कहते हैं
ये कोड़ियों या इमली के बीज या डाइस के साथ और 8×8 के स्क्वेयर बोर्ड के साथ खेला जाता है
यह खेल लगभग हर राज्य में खेला जाता था
कर्नाटक में इसे चौकाबारा कहते थे मध्यप्रदेश में अत्तू
केरल में पकीड़ाकाली तो महाराष्ट्र में चम्पल तो तमिलनाडु में दायाम और थायाम तो कहीं राजस्थान में चंगापो न जाने कितने नाम थे लेकिन खेलने के बाद पता चलता है हर राज्य वाले को भाषा भले न जानता हो अरे वाह ये खेल तो हम भी करते थे
हम में से कौन होगा जिसने बचपन में गिल्लीडंडा न खेला हो
गिल्लीडंडा तो गाँव से लेकर शहरों तक में खेले जाने वाला खेल है
देश के अलगअलग भागों में इसे अलगअलग नामों से जाना जाता है
आंध्रप्रदेश में इसे गोटिबिल्ला या कर्राबिल्ला के नाम से जानते हैं
उड़ीसा में उसे गुलिबाड़ी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इसे वित्तिडालू कहते हैं
कुछ खेलों काअपना एक सीजन होता है
जैसे पतंग उड़ाने का भी एक सीजन होता है
जब हर कोई पतंग उड़ाता है जब हम खेलते हैं हम में जो यूनिक क्वालिटीज होती हैं हम उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं
आपने देखा होगा कई बच्चे जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं लेकिन खेलते समय बहुत ही चंचल हो जाते हैं
ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं बड़े जो गंभीर से दिखते हैं खेलते समय उनमें जो एक बच्चा छिपा होता है वो बाहर आता है
पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथसाथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग एकाग्रता सजगता स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं
और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं वह जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं
लक्ष्य तय करना दृढ़ता कैसे हासिल करना टीम स्पिरिट कैसे पैदा होना परस्पर सहयोग कैसे करना
पिछले दिनों मैं देख रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्रामेस में भी ओवरॉल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे जो परंपरागत खेल थे उसका आजकल उपयोग हो रहा है और बड़ी आसानी से ओवरॉल डेवलपमेंट में हमारे खेल काम आ रहे हैं और फिर इन खेलों को खेलने की कोई उम्र तो है ही नहीं
बच्चों से ले करके दादादादी नानानानी जब सब खेलते हैं तो यह जो कहते हैं न जनरेशन gapअरे वो भी छूमंतर हो जाता है
साथहीसाथ हम अपनी संस्कृति और परम्पराओं को भी जानते हैं
कई खेल हमें समाज पर्यावरण आदि के बारे में भी जागरूक करते हैं
कभीकभी चिंता होती है कि कहीं हमारे यह खेल खो न जाएँ और वह सिर्फ खेल ही नहीं खो जाएगा कहीं बचपन ही खो जाएगा और फिर उस कविताओं को हम सुनते रहेंगे
यह दौलत भी ले लो
यह शौहरत भी ले लो
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी
मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन
वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी
यही गीत हम सुनते रह जाएँगे और इसीलिए यह पारंपरिक खेल इसको खोना नहीं हैआज आवश्यकता है कि स्कूल मौहल्लेयुवामंडल आगे आकर इन खेलों को बढ़ावा दें
क्राउड सोर्सिंग के द्वारा हम अपने पारंपरिक खेलों का एक बहुत बड़ा आर्काइव बना सकते हैं
इन खेलों के वीडियोस बनाए जा सकते हैं जिनमें खेलों के नियम खेलने के तरीके के बारे में दिखाया जा सकता है
एनिमेशन फ़िल्में भी बनाई जा सकती हैं ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है जिनके लिए यह गलियों में खेले जाने वाले खेल कभीकभी अज़ूबा होता है वह देखेंगे खेलेंगे खिलेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो आने वाले 5 जून को हमारा देश भारत आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड एनवायर्नमेंट डे सेलिब्रेशन विश्व पर्यावरण दिवस को भारत होस्ट करेगा
यह भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व को भी स्वीकृति मिल रही है इसका परिचायक है
इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन
मेरी आप सभी से अपील है इस थीम के भाव को इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हमpolythene लो ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग न करें और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रकृति पर वाइल्ड लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है उसे कम करने का प्रयास करें
वर्ल्ड एनवायर्नमेंट डे की वेबसाइट wedindia2018 पर जाएँ और वहाँ ढ़ेर सारे सुझाव बड़े ही रोचक ढ़ंग से दिए गए हैं देखें जानें और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करें
जब भयंकर गर्मी होती है बाढ़ होती है
बारिश थमती नहीं है
असहनीय ठंड पड़ जाती है तो हर कोई एक्सपर्ट बन करके ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चंगे इसकी बातें करता है लेकिन क्या बातें करने से बात बनती है क्या प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना प्रकृति की रक्षा करना यह हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए हमारे संस्कारों में होना चाहिए
पिछले कुछ हफ़्तों में हम सभी ने देखा कि देश के अलगअलग क्षेत्रों में धूलआँधी चली तेज़ हवाओं के साथसाथ भारी वर्षा भी हुई जो कि अनसीजनल है
जानहानि भी हुई मालहानि भी हुई
यह सारी चीज़ें मूलतः वीथर पैटर्न में जो बदलाव है उसी का परिणाम है हमारी संस्कृति हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है
हमें प्रकृति के साथ सदभाव से रहना है प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है
महात्मा गाँधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी
जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है
जब भारत ने Cop21 और पारिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई
जब हमनें इंटरनेशनल सोलार एलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया तो इन सबके मूल में महात्मा गाँधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था
इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लैनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या इनोवेटिव कर सकते हैं बारिश का मौसम आने वाला हैहम इस बार रेकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रखरखाव की व्यवस्था करना
मेरे प्यारे देशवासियो और विशेषकर के मेरे नौजवान साथियो आप 21 जून को बराबर अब याद रखते हैं आप ही नहीं हम ही नहीं सारी दुनिया 21 जून को याद रखती है
पूरे विश्व के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सर्वस्वीकृत हो चुका है और लोग महीनों पहले तैयारियाँ शुरू कर देते हैं
इन दिनों ख़बर मिल रही है सारी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भरसक तैयारियाँ चल रही हैं
योगा फोर यूनिटी और हार्मोनियस सोसाइटी का ये वो सन्देश है जो विश्व ने पिछले कुछ वर्षों से बारबार अनुभव किया है
संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि ने सदियों पहले अपने शतकत्रयम् में लिखा था
धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी
सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः
शय्या भूमितलं दिशोSपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं
एते यस्य कुटिम्बिनः वद सखे कस्माद् भयं योगिनः
सदियों पहले ये कही गई बात का सीधासीधा मतलब है कि नियमित योगा अभ्यास करने पर कुछ अच्छे गुण सगेसम्बन्धियों और मित्रों की तरह हो जाते हैं
योग करने से साहस पैदा होता है जो सदा ही पिता की तरह हमारी रक्षा करता है
क्षमा का भाव उत्पन्न होता है जैसा माँ का अपने बच्चों के लिए होता है और मानसिक शांति हमारी स्थायी मित्र बन जाती है
भर्तृहरि ने कहा है कि नियमित योग करने से सत्य हमारी संतान दया हमारी बहन आत्मसंयम हमारा भाई स्वयं धरती हमारा बिस्तर और ज्ञान हमारी भूख मिटाने वाला बन जाता है
जब इतने सारे गुण किसी के साथी बन जाएँ तो योगी सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है
एक बार फिर मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे योग की अपनी विरासत को आगे बढ़ायें और एक स्वस्थ खुशहाल और सद्भावपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करें
मेरे प्यारे देशवासियो आज 27 मई है
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जी की पुण्यतिथि है
मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूँ
इस मई महीने की याद एक और बात से भी जुड़ी है और वो है वीर सावरकर
1857 में ये मई का ही महीना था जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी
देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे
दुःख की बात है कि हम बहुत लम्बे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे
वास्तव में उस घटना को न केवल कम करके आँका गया बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुँचाने का भी एक प्रयास था
यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक हो के लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी
सावरकर सहित लंदन के इंडिया हाउस के वीरों ने इसकी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई
यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस महीने में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ उसी महीने में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ
सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे
आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिशराज के खिलाफ़ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं लेकिन इन सबके अलावा वे एक ओज़स्वी कवि और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया
सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है
अटल जी ने कहा था सावरकर माने तेज़ सावरकर माने त्याग सावरकर माने तप सावरकर माने तत्व सावरकर माने तर्क सावरकर माने तारुण्य सावरकर माने तीर सावरकर माने तलवार
कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने
सावरकर कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले
संवेदनशील कवि होने के साथसाथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे
मेरे प्यारे भाइयोबहनो मैं टीवी पर एक कहानी देख रहा था
राजस्थान के सीकर की कच्ची बस्तियों की हमारी ग़रीब बेटियों की
हमारी ये बेटियाँ जो कभी कचराबीनने से लेकर घरघर माँगने को मजबूर थीं आज वें सिलाई का काम सीख कर ग़रीबों का तन ढ़कने के लिए कपड़े सिल रही हैं
यहाँ की बेटियाँ आज अपने और अपने परिवार के कपड़ों के अलावा सामान्य से लेकर अच्छे कपड़े तक सिल रही हैं
वे इसके साथसाथ कौशल विकास का कोर्स भी कर रही हैं
हमारी ये बेटियाँ आज आत्मनिर्भर बनी हैं
सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही है और अपनेअपने परिवार के लिए एक ताक़त बन गई है
मैं आशा और विश्वास से भरी हमारी इन बेटियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ
इन्होंने दिखाया है कि अगर कुछ कर दिखाने का जज़्बा हो और उसके लिए आप कृतसंकल्पित हों तो तमाम मुश्किलों के बीच भी सफलता हासिल की जा सकती है और ये सिर्फ सीकर की बात नहीं है हिन्दुस्तान के हर कोने में आपको ये सब देखने को मिलेगा
आपके पास अड़ोसपड़ोस में नज़र करोगे तो ध्यान में आएगा कि लोग किस प्रकार से परेशानियों को परास्त करते हैं
आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी चाय की दुकान पर जाते हैं वहाँ की चाय का आनंद लेते हैं तो साथ के कुछ लोगों से चर्चा और विचारविमर्श भी होता ही है
ये चर्चा राजनीतिक भी होती है सामाजिक भी होती है चलचित्र की भी होती है खेल और खिलाड़ियों की भी होती है देश की समस्याओं पर भी होती है कि ऐसी समस्या है इसका समाधान ऐसे होगा ये करना चाहिए लेकिन अक्सर ये चीज़ें सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाती हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से अपनी मेहनत और लगन से बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं उसेहकीकत का रूप देते हैं
दूसरों के सपनों को अपना बना लेने वाले और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को खपा देने की कुछ ऐसी ही कहानी उड़ीसा के कटक शहर के झुग्गीझोपड़ी में रहने वाले डी प्रकाश राव की
कल ही मुझे डी प्रकाश राव से मिलने का सोभाग्य मिला
श्रीमान् डी प्रकाश राव पिछले पाँच दशक से शहर में चाय बेच रहे हैं
एक मामूली सी चाय बेचने वाला आज आप जानकर हैरान हो जायेंगे 70 से अधिक बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा भर रहा है
उन्होंने बस्ती और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए आशा आश्वासन नाम का एक स्कूल खोला
जिस पर ये ग़रीब चाय वाला अपनी आय का 50 धन उसी में खर्च कर देता है
वे स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य और भोजन की पूरी व्यवस्था करते हैं
में डी प्रकाश राव की कड़ी मेहनत उनकी लगन और उन ग़रीब बच्चों के जीवन को नयी दिशा देने के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
उन्होंने उनकी ज़िन्दगी के अँधेरे को समाप्त कर दिया है
तमसो मा ज्योतिर्गमय ये वेदवाक्य कौन नहीं जानता है लेकिन उसको जी करके दिखाया है डी प्रकाश राव ने
उनकी जीवन हम सभी के लिए समाज और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है
आप के भी अगलबगल में ऐसी प्रेरक घटनाओं की श्रृंखला होगी
अनगिनत घटनाएँ होंगी
आइये हम सकारात्मकता को आगे बढाएं
जून के महीने में इतनी अधिक गर्मी होती है कि लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं और इस उम्मीद में आसमान में बादलों की ओर टकटकी लगाये देखते हैं
अब से कुछ दिनों बाद लोग चाँद की भी प्रतीक्षा करेंगे
चाँद दिखाई देने का अर्थ यह है कि ईद मनाई जा सकती है
रमज़ानके दौरान एक महीने के उपवास के बाद ईद का पर्व जश्न की शुरुआत का प्रतीक है
मुझे विश्वास है कि सभी लोग ईद को पूरे उत्साह से मनायेंगे
इस अवसर पर बच्चों को विशेष तौर पर अच्छी ईदी भी मिलेगी
आशा करता हूँ कि ईद का त्योहार हमारे समाज में सद्भाव के बंधन को और मज़बूती प्रदान करेगा
सबको बहुतबहुत शुभकामनाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो आप सबका बहुतबहुत धन्यवाद
फिर एक बार अगले महीने मन की बात में मिलेंगे